और यहां पर खंभा भी लगा हुआ है।

यहां पर हमें ये सड़क नजर आ रही है जिसमें यहां पर कुर्सी भी धरी हुई है डस्टबिन भी यहां पर धरा हुआ है।

और लाइट भी यहां पर लगी हुई है और पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं यहां पर और--

और पीछे से एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

और यहां पर बाइक भी नजर आ रही है।

और यहां पर पत्थर भी लगा हुआ है।

और यहां पर घर भी देख रहे हैं बहुत सारे।

और यहां पर पीछे इसके पौधे भी धरे हुए है।

और यहां पर एक वो भी कंडी भी धरी हुई है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरा भी धरे हुए है।

जोकि तैयार हो रही है।

यहां पर आदमी काम कर रहे हैं और यहां पर जे_सी_बी भी चल रही है।

इस चित्र में हमें राजकीय महिला प्राइवेट शामली दिखाई दे रहा है।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

आगे एक मैडम बैठी है जो कि इन पे योगा करवा रही है और ये--

यहां पर माइक लगा हुआ है।

सरिए भी दिख रहे हैं।

एक आदमी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है आगे डस्टबिन भी दिखाई दे रही है।

एक आदमी खड़ा हुआ है और यहां पर लाइटें भी जल रही है।